और इसमें एक --

पेड़ हैंवहाँ पर कुछ बस है लावारिस चित्र में चार व्यक्ति है जो खड़ा है और --

मोर है जहाँ पे पंख फैला रखा है और बगल में एक बांस का भी चित्र है।

एक पोल खड़ा है पोल के जस्ट बगल में ही ऑटो खड़ा है है ना --

और ये लग रहा है कुछ दूकान का सीन है जहाँ पे सनेक्स वगेरा दिखाई दे रहे हैं ।

लगा हुआ है और कुछ वृक्ष भी हैं स्कूल के अंदर।

और ये लाल रंग का बगल में जो है शायद हमें लगता है की बस स्टोप है।